आदमी आ रहा है अ उ सलकी से जा रहा है निखित है रीडिंग है।

यहाँ पे देख सकते हैं एक पिलर गरा रहा है एक आदमी का हाथ टूटा हुआ है अ लाल पिला।

एक ये हुआ ये ब्लू कलर का टीसर्ट पीना हुआ है।

नीचे में बहुत सारा बोड साटा हुआ ऊपर में शीशा है शीशा के ऊपर बहुत समान रखा हुआ है बहुत सारा समान रखा हुआ है यहां पे पोस्टर ओस्टर साट रहें काउंटर --

एक आदमी मोनी में चश्मा लगाया हुआ है दो आदमी बैठा हुआ है एक उजला कलर का सर्ट पहना हुआ है।

इधर भी बैग है वो पोस्टर साटा हुआ है ब्लू कलर का उज्जर कलर का गेट है।

एक बड़ा सा भी शीशा लगा हुआ है हरा हरा पेड़ है एक लाल कलर का भी बस है और ब्लू कलर का शर्ट पेहना एक आदमी कुछ लिया हुआ है।

एक बड़ा सा लाइट लगा हुआ है बुलु कलर में भी इस पोस्टर साटा हुआ है हरा-हरा पेर है बगल से भी बहुत सारा पेर है हरा-हरा लाइट लगा हुआ है उजला बहुत सारा।

एक स्टार बना हुआ स्टार में एक फोटो सटा हुआ बुलु कलर का है एक आदमी शर्ट पेहना हुआ घड़ी पेहना हुआ।

एक आदमी है एक आदमी इधर से एक आदमी उधर से है और ब्लू कलर का अथी कुछ है पीला कलर का भी लगा हुआ--

ब्लू कलर का लगा हुआ है पन्नी है बड़ा सा फोड़ है नीला कलर का घर है शीशा भी लगा हुआ है पीला कलर का घर है।

बड़ा सा फील्ड है उसमें बहुत आदमी है उजला उजला कलर का कार भी है लाल कलर का ट्रैक्टर हरा हरा पेड़ है हरा हारा घास है।

ये सब फुटबॉल है बहुत-सा कपड़ा भी है भी है बैलून भी है टेबुल भी है।

बड़ा सा गेट है उजला कलर का भी है ऑरेंज कलर का भी है हरा पेर भी है टेबुल भी है।

और अंदर में गाड़ी भी है उजला उजला घर भी है अंदर में हरा सा भी घर है अंदर में और लाल भी है।

कलर का घर भी है उजला कलर का पोस्टर साटा हुआ हैं हरा हरा पेड़ भी हैं नीचे में हरा भरी हरा घास भी है भी हैं उजला कलर का--

जा रहा है एक आदमी और बड़ा सा भी ट्रक लगा हुआ है एक टेबुल भी है।

और खिड़की है हरा हरा घास भी है और एक बिल्डिंग में बड़ा सा भी--

नीचे मे हरा हरा घास है एक लड़की है उजला कल ब्लू कलर का टांगी हुई है हरा हरा फिर भी है।

टोपी पेंही हुइ है और काला कलर का शर्ट पहेनाया हुआ है।